सामने अधिक पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सी रखी हुई हैं। लगता है यहां कोई शादी हो रही है।